यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई महल जैसा है।

और सामने एक येलो कलर का बिल्डिंग नज़र आ रहा है जोकि बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।